के नीचे सिरों माला बार पंजाब मिशन फरीदाबाद डायसिस रोड़ा वाली लिखा है।

कुछ भैसों का कलर लाइट ब्राउन ॲण्ड व्हाइट हैं।

इस गाड़ी का नंबर एच_आर --

इसके ऊपर इंडिया के काफी सारे फ़्लैग्स भी लगे हुए हैं।

बाइक का नंबर ए_पी जीरो थ्री सी_एच वन फाइव डबल फोर है।

के ऊपर शेड डाला गया है।

व्हाइट कलर की टंकी का ढक्कन भी उतार कर रखा हुआ है।

इसके नीचे कुछ कॉम्ब शोप आदि कुछ पड़ा--

एक आदमी के हाथ में पट्टी बांधी हुई है।

इसमें काफी बड़ी पेशेंट के लिए चेयर्स भी लगी हुई है।

बसेस का कलर अलग-अलग है एक बस के पा --

सामने मिरर पर यशु मसीह की तस्वीर बनी हुई है।